यह एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर में एक लम्बा सा --

और ऊपर इसमें दो भीपर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर लाइट --

और घड़े से पानी नीचे की और गिर रहा हैं।

यह एक प्रति मोबाइल एवं फोटो स्टूडियो है| जहाँ पर फोटो खींचा आ सकते हैं डिज़ाइन डिज़ाइन स्टाइलिस्ट फोटो और मैक लिविंस लिखा हुआ है और बाहर में गाडी है।

मोबाइल टावर है और पेड़ सब हरा-भरा दिख रहा है जो बहुत ही सुन्दर दिख रहा है। पेड़ो से भरा हुआ जंगल --

और व्हाइट कलर का बेंच लगा हुआ है। ऊपर में पंखा चल रहा है और साइड साइड में बहुत सारी दीवारे हैं जो टाइल्स से बनी हुई हैं।